बगल में एक खंभा लगा हुआ है जिस पे कोई एक कुस्टम टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सीढ़ियों के बगल में एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

दोनों पिलरों के बीच में एक बड़ा सा गुंबद बना हुआ--

उस इमारत के सामने में कुछ खजूर के बड़े बड़े पेड़ हैं।

और इस बेसमेंट में सामने में करीने से एक लाइन से अ कई सारे नल लगाए गए--

और ये जो फर्श है वो उसमें ब्लॉकस बने हुए हैं।

गेट जो है अ हरे रंग की गेट है उसके ऊपर नंदन वाटिका मेंशन किया हुआ है।

दाहिने तरफ जो रेक लगी हुई है उसमें फल फ्रूट्स लगे हुए हैं ।

इस फोटो में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ।

पत्थर जो है दोनो साइड में है पानी के जहां से सामने से पानी नीचे की ओर बहती है।

रैक के सामने में कुछ बॉक्स रखे हुए हैं एक कार्टून दिखाई दे रहा है जो कि खाली है उसके बगल में बच्चों के चलने के लिए वॉकर है उसके बगल में एक बोरा है।

लीचीयो के बीच में पत्ते पर दिखाई दे रहे हैं जो की लीचीयो के है।

और यह नाव जो है नदी के किसी किनारे पे है।

ब्लैक कलर के बाल हैं और लंबे लंबे बाल हैं।

और ये पहाड़ के दाएं साइड में एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है काफी सारे पत्थर दिखा--

वो अह रैक है वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

और ये बिल्डिंग जो है उसको दो दो फ्लोर है दोनों फ्लोर के सामने में एक छोटा सा पोर्टिको बना हुआ है।

इसमें तीन पंखे लगे हुए हैं रैक के ऊपर में सफेद रंग के वस्त्र रखे हुए हैं।